इस फोटो में आपको बच्चे दिखाई दे रहे हैं यो योगा कर रहे हैं।

इस फोटो में आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक कपड़े का शोरूम है जिसमें बाहर कुछ व्यक्ति बैठे हैं एक पुतले को --

कबूतर दाना वगैरे खा रहे हैं और ये फोटो वैष्णो के करनी माता मंदिर की है जिसमें मंदिर पे कबूतर भी बैठे हुए हैं और बाहर --

यह फोटो आपको दिखाई दे रही है कोई पार्क वगैरा की फोटो दिखाई दे रही है जिसमें बहोत बड़ी --

और एक महिला दिखाई दे रही है जिसमे लग रहा है ये कुछ खेल खेल रहे है और पीछे कुछ खिलौने भी पड़े दिखाई दे रहे है और--

इस फोटो मे आपको जो दिखाई दे रहा है लग रहा है ये कोई स्कूल की ऑफिस लग रही है जिसमे --

पंखे फ्रिज कूलर वगैरह एल_सी_डी भी लगी हुई है फ्रिज मिक्सी वगैरह रखे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान है ये।

इस फोटो मे आपको महिला और कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं लग रहा है ये हरिद्वार का दृश्य है जिसमें भगवान की पूजा की जाती है।